उसका साइन दिखाई दे रहा जिस के उपर एक मूली लटकी हुई दिखाई दे रही है और हमे यहा पर बहोत सारे लोग बैठे दिखाई दे रहे जिन मे से कुछ लोगों ने यहापे लाल और सफेद कलर की कपडे पहेने है।

पर एक बहुत ही बड़ी सड़क दिखाई दे रही है सड़क हमें बहुत दूर-दूर तक जाती हुई नजर आ रही है सड़क का कलर हमें काला दिखाई दे रहा है और उसके बाजू मेंहमें एक फुटपाथ दिखाई दे रही है जो की पीले कलर की नजर आ रही है।

जो की पिंक और हरे कलर की नजर आ रही और हमें यहाँ पर बहुत सारे रंगबेरंगी स्टार्स से सजी हुई दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ नजर आ रही और हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे जो की बहुत अच्छा --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

उसके नीचे एक ए.टी.एम मशीन दिखाई दे रही है ए.टी.एम के अंदर हमे बहुत सारी लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है और हमे यहा पर बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे है और एक आदमी दिखाई दे रहा है जिस के हाथ मे हमे बंदूक दिखाई दे रहा है।

उधर एक बहुत ही बड़ा मंडप दिखाई दे रहा है मंडप में हमें यहां पर बहुत ही बड़ा हॉल नजर आ रहा है मंडप के दिवार का कलर हमें यहां पर सफेद दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हमें बहुत सारे पर्दे लगे हुए नजर आ रहे है पर्दों का कलर हमें गुलाबी दिखाई दे रहा है।

और उसके ऊपर बैठा एक लड़का बच्चा दिखाई दे रहा है जो की कथाएं कलर की शर्ट नीले कलर का जींस पहना हुआ नजर आ रहा है और हमें यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ में हमें बहुत सारे पत्ते नजर आ रहे जो कि हरे कलर के नजर आ रहे है।

यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की जिसने की हाथ में एक फोन लिया नजर आ रहा है और उसने यहाँ पर काले कलर की टीशर्ट पहना हुआ है और काले कलर का पैंट पहना हुआ नजर आ रहा है।

कूर्चि दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद कलर की नजर आ रही है और उसके बाजू में हमे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की साफेद कलर की बनियान पहने नूसर आरहा है और नीले कलर पँन्ट पहना हुआ दिखाई दे रहा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है।